उसके सामने में बहुत सारी मकाने दिखाई दे रही है जिसमे ऑरेंज ब्लू और हरे कलर की मकान दिखाई दे रही है।